पर डांस सीखाते हुए नज़र आ रहे है बच्चे डांस सीखते दिखाई दे रहे है यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड पर डांस नेशन लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ ए.सी. नजर आ रहे है ए.सी. काफी बड़े दिखाई दे रहे है सीलिंग पर काफ़ी सारी लाईट नजर आ रही हैं।

सलून दिखाई दे रहा है सलून काफी बड़ा दिखाई दे रहा है सलून में काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है सामने एक टी.वी. स्क्रीन नजर आ रही है सामने आयना काफ़ी बड़ा नजर आ रहा है अंकल आयने में नजर आ रहे हैं।

--दिखाई दे रहा है प्लेन काफी बडा नजर आ रहा है प्लेन का कलर सफेद और नीला है प्लेन पर इंडिगो लिखा हुआ है प्लेन में काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं।

कुछ लोग उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर वर्कर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर एक आंटी व्हीलचेयर पर बैठी दिखाई दे रही है पीछे बिल्डिंग नजर आ रही है प्लेन काफी बड़ा दिखाई दे रहा है प्लेन में काफी सारा सामान उतरते नजर आ रहा हैं।

यहाँ पर कुछ कैमरेमैन दिखाई नजर आ रहे हैं यहाँ पर कुछ लाइट दिखाई दे रही है यहाँ पर काफी सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर काफी फ्लावर्स नजर आ रहे हैं पीछे कुछ लोग बैठे नजर आ रहे हैं ऊपर एक ऐ_ सी_ दिखाई दे रहा है ऊपर एक फैन नजर आ रहा है।

एटीएम नजर आ रहा है एटीएम के बाहर काफ़ी सारे लोगो की लाइन लगी दिखाई दे रही है यहाँ पर काफी सारे लोग पैसे निकालते दिखाई दे रहे है यहाँ पर एक आंटी जाती हुई नजर आ रही हैं।

यहाँ कुछ लोग पानी में खड़े नजर आ रहे हैं यहाँ पर एक बच्चा दिखाई दे रहा है बच्चा अपने पापा के साथ हाथ पकड़ कर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पीछे दीवार नज़र आ रही है दीवार पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

बाजार दिखाई दे रहा है बाजार काफी बड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पर काफी सारे लोग मछलियाँ काटते दिखाई दे रहें है यहाँ पर पीछे कुछ पानी की टंकियां नजर आ रही हैं। .

यहाँ पर काफ़ी सारी मछलियाँ छोटी -सी दिखाई दे रही है कुछ मछलियाँ बड़ी नजर आ रही हैं यहाँ पर सभी प्रकार की मछलियाँ नज़र आ रही हैं।

खम्भा दिखाई दे रहा है खम्भे में काफी सारे तार दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर काफी सारी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं पीछे काफी सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

सभी के पास अलग -अलग मछलियाँ दिखाई दे रही हैं यहाँ कुछ मछलियाँ काफी छोटी नजर आ रही हैं कुछ मछलियाँ काफी बड़ी दिखाई दे रहीं है बाजार में काफी सारे लोग दिखाई दे रहें है।